यहाँ एक मंदिर है जो व्हाइट कलर से पेंट यहाँ पे दो से तीन मंदिल होंगे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है लाइट जल रहा है पेड़-पौधे हरे-भरे हैं रात का समय है बादल पूरा काला दिखाई दे रहा है।